इस फोटो में घड़ी नजर आ रही है इस फो टो में फ्लैग नजर आ रहा है।

इस फोटो में ऑईल नजर आ--